जिम दिखाया गया है जो कि यह जिम दिखने में बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुन्दर है और यहाँ तीन लड़के सेल्फी लेते हुए --

एक बहुत ही अच्छे और सुन्दर से हमें झींगा मछली दिखाया गया है जो कि यह मछली --

जो कि यह पेट्रोल टंकी बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है दिखने में और यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग इसको देखने घूमने --

यह एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर हमें --

यह एक बहुत ही अच्छा और सुंदर से कोई मूर्ति का उद्घाटन किया गिया है जो कि यह मूर्ति बहुत ही अच्छे और सुंदर ढ़ंग से --